मेज पे बहुत सारे गिलास रखे हुए हैं जो स्टील के हुए हैं।

नदी है नदी में बहुत सारी नांव पड़ी हुई है।

एक मकान है। मकान के बाहर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

ऊपर एक टीन सेट पड़ा हुआ है बलफ जल रहा है पास में ये--

उसपे नवाबगंज पक्षी विहार में दिखने वाले कुछ जलीय पक्षी--

जिन्होंने सफेद रंग का कोट पहन रखा है चश्मा लगाए हुए हैं एक मेज है।

पत्थर के पास में एक हरी गेंद पड़ी हुई है चारों तरफ लकड़ी की बाउंड्री बनी हुई है।

दीवाल पे लिखा हुआ है ज्योति भोजनालय शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट।

एक गुफा है गुफे के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है।

काउंटर पे मुकेश लेडिज टेलर सलवार सूट एवं ब्लाउज स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है।